क्या मानना है आप जरा इसे देख के और समझ के बताइए।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं शायद ये वादियां और पेड़--

बनी हुई दिखाई दे रही है एंड आल आपको भी इसमें सारी चीजे दिखाई देती हुई नजर आ रही होगी आपका क्या मानना है इसमें?

आप भी जरा इसे देख के और सोच समझ के देख के जान के बताइए हमें क्या नजर आ रहा है?

आपको भी नजर आ रहे होंगे आपका क्या मानना है इसको लेके आप देख के बताइए इस फोटो में।

इसमें इसे देखके आपका क्या मानना है आप जरा इसे देखके बताइए--

इसको लेके आपका क्या मानना है आप जरा इसे देखके बताइए--

और यह फोटो काफी शानदार डेकोरेशन में--

इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपको भी शायद इस फोटो के अंदर--